वेन दिखाई दे रही है।

गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे कुछ लोग--

डिश दिखाई दे रही है।

शॉप दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मुझे--

फूल दिखाई दे रहे हैं।

पूल खेलता दिखाई--

बोहोत अच्छा डेकोरेट --

करते दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है और--